घर के बराबर में छोटे छोटे दो बोर्ड हैं और घर के आगे तीन चार गमले धरे हैं और उसमें छोटे छोटे पेड़ हैं।

और दो रिक्शा खड़ी है एक रिक्शा में कुछ कपड़े रखे हैं और एक बिजली का खंबा है और तीन आदमी खड़े हुए है।

यह एक घर है। घर के अंदर एक आदमी मशीन लिए हुए है। वह फरस पर लगा रखी है।

यहां पर एक साधन खड़ा हुआ है वह आगे से लाल रंग का है।

इस पर एटेल लिखा हुआ है और बोर्ड के नीचे एक ए_सी दिख रही है और ए_सी के बराबर में एक मीटर लग रहा है।

यह एक सड़क है सड़क के ऊपर एक टरक है और इसके बराबर में एक दीवार दिख रही है।

और ईंटों की दीवार बनी हुई है और इसके पास में छोटा छोटा घास भी है।

और इसके पीछे एक डिब्बा भी दिखाई दे रहा है वह काले कलर का है और कुछ घास भी दिखाई दे रहा है।

यह एक सड़क है। सड़क के बराबर में लेंटर घूनने की मशीन है। मशीन के बराबर में कुछ आदमी बजरी के तसले लिए हुए खड़े हैं।

स्कूल के बराबर में कुछ एक सड़क है और सड़क पर टेंपू खड़ा है टम्पू में आदमी बैठे हैं।

और हॉस्पिटल के पीछे बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं और एक पेड़ कटा हुआ है और चौड़ा मैदान भी देख रहा है।